इसमे एक झोपड़ी दिख रही है और भगवान जी की तस्वीरे ढेर सारी लगी हुई है पोस्टरे सारे झोपड़ी में --

इस चित्र में एक पुराना किला दिख रहा है जिसमे-जिसमे दो हाथी है पत्थर के बने हुए है अंदर मे रास्ता है जाने के लिए पेड़ वगैरा दिख रही है।

ऊपर मे आसमान दिख रहा है बादले वगेरा दिख रही है।

घास वैगरा भी दिखाई ईंटे की दीवारें भी दिख रही है आधी-आधी और नीला आसमान दिख रहा है बादले छाए हुई है।